सामने एक फूटपाथ दिखाई पड़ रहा हैजिस पर ईंटे रेड कलर के और येलो कलर की बिछी हुई हैं। सामने कुछ घास दिखाई पड़ रहा है जोकी ग्रीन कलर में दिख रहा है।

ये छत पर कम चल रहा है जिस पर बहुत सारी सरिया लगी हुई हैं और उ कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। सामने एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जो की पिंक कलर में दिख रही है। उसके बगल में एक ग्रीन कलर की बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है। सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। उसने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है। सामने एक आदमी ने सर पे अपने पत्थर जैसा कुछ उठा रखा है।

सामने दो इ-रिक्शा दिखाई पड़ रहें हैं। एक ब्लू रंग का दिखाई पड़ रहा है एक रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है। पीछे दिवाल दिखाई पड़ रही है जो की ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है। साइड में एक बाल्टी दिखाई पड़ रही जो की रेड कलर में दिखाई पड़ रही है। नीचे की फर्श ब्राउन कलर और ग्रे कलर में दिख रही है।

साइड में एक येलो कलर की रेलिंग लगी हुई है। पीछे दिवाल वाइट कलर में दिखाई पड़ रही है जो की कांच की तरह लगा हुआ है। ऊपर शेडो सिल्वर कलर में दिखाई पड़ रहा है। पीछे कुछ कांच के गिलास भी लगे हैं जो की दरवाजे की तरह दिख रहा है।

शटर दिखाई पड़ रहा है जो की ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ रहा है जो की बंद है। उसके ऊपर येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ है। बगल में दरवाजे जैसा शटर लगा हुआ है।

सामने एक कांच का गिलास जैसा दिखाई पड़ रहा है और एक दरवाजा लगा हुआ है। दरवाजा बंद है। सामने एक डस्टबिन जैसा दिखाई पड़ रहा है जो की ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ रहा है। सामने एक आदमी भी खड़ा हुआ है ।

ऊपर शैडो दिखाई पड़ रहा है जोकी ग्रे कलर में दिख रही है। साइड में दीवार का कलर व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रहा है।